कार सी लग रही है वो कार मुझे कुछ ऐसी भी लग रही है वो कुछ अच्छी -अच्छी कार कुछ खराब कार सी लग रही उसका ऐसे लगा वो कार मुझे कुछ उसका कुछ बनाया वो कार में ऐसे लगा कुछ इंजन--

लाइटे भी दिख रही है व्हाइट कलर का दीवाले भी बनी हुई दिखाई दे रही दीवाल मे कई प्रकार का पेड़ दिखाई दे रहा कुछ खंभे भी दिख रहे वहाँ कुछ अच्छा- सा देखने को मिल रहा है कुछ लाइट दिखने को मिल रही है वहाँ पर बहुत सारी मुर्गियाँ देखने को अच्छी लग रही है।

देखने को मिल रहा वहाँ पर कुछ ऐसा लग रहा है कुछ टेंट- सा बना हुआ दिखाई दे रहा है छोटा सा टेंट लगा हुआ कुछ कुछ रखा हुआ कुछ अच्छे फूलों के टाइम में बना हुआ कुछ दिखाई दे रही--